भवन में बहुत सारे दरवाजे एवं खिड़कियां नजर आ रही है।

तस्वीर में बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।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

इसमें बिजली का तार भी नजर आ रहा--

बगल मे और भी घज घर नजर आ रहा है।

बहुत सारे लाइड लगे हुए हैं ऐ_सी भी लगा हुआ है।

यह घर का पेंट गुलाबी कलर से किया गया है।

होटल को बहुत अच्छा तरीके से सजाया गया हैं।

बगल में स्केच बोर्ड लगा हुआ है सीढ़ियों पर गमले में कुछ फूल लगे हुए हैं।

पानी साफ नजर आ रहा है बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बिल्डिंगे भी बनी हुई है।

तस्वीर मे बहुत सारे तार नजर आ रहे हैं।

आसमान का रंग नीला और लाल दोनों कलर का नजर आ रहा है।

और बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

वहां पे पंडित जी पूजा करा रहे हैं।

टेबल रखा हुआ है तीन चेयर लगी हुई है।

फल को एक रेक में सजाया गया है।

फल का बैकग्राउंड में काला कलर का कुछ लगाया गया है।

यहा का नजारा बहुत अद्भुत है। वहा पे बहुत सारे पौधे लगे हुए है।

स्टेज को भी सजाया गया है एक कैमरा भी लगाया गया है।

बगल मे ऑरेंज कलर का एक बॉटल भी रखा हुआ है।

जाली के बगल में हरी भरी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

एक लोग ने पीले कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है।

बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है।

रेस्टोरेंट में बहुत सारा आइटम मिलता है उसका तस्वीर भी लगा हुआ है।

यहां पे एक साउंड सिस्टम भी दिखाई दे रहा है।